के साथ शीशा और झुलना भी लगा हुआ है।

नाव के पीछे कुछ पहार भी है।

इस प्लेग्राउंड में बहुत सारे बच्चे खेल कूद और एक्सरसाइज कर रहे है।

ये प्ले ग्राउंड दीवारों से घिरा हुआ है।

दिवार के पीछे जंगल भी है।

जंगलो के बीच ढलता सूरज दिखाया जा रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक रूम दिखाया जा रहा है।

इस रूम में बहुत सारे पंखे भी लगे हुए है।

तस्वीर में हमें एक टेबल और चेयर दिखाया जा रहा है।

टेबल की साइड में खुली खिड़की भी है।

इस चेयर के पीछे एक फूल का टब भी दिखाया जा रहा है।

ये नाव एक रस्सी से बंधा हुआ है।

झील में आसमान का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक सड़क दिखाया जा रहा है।

इस सड़क के राइट साइड में कुछ जाली में बने हुए फूल पौधे भी दिखाई जा रहे है।

इस सड़क के लेफ्ट साइड में कुछ गाड़ियां भी पार्क्ड है।

फ्रिज के ठीक ऊपर पानी के बोतल और कोल्ड ड्रिंक्स भी रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें मजदूर काम करते हुए दिखाए गए हैं।

बस के आगे से एक गाड़ी एक घर के अंदर इंटर करते हुए दिख रहा है।

इस सड़क के पीछे बिल्डिंग्स बनी हुई है।

इस रूम में एक पंखा भी चल रहा है।

इस दुकान में विभिन्न तरीके के फूल है।

इस तस्वीर में हमें एक बिल्डिंग दिखाया जा रहा है इस बिल्डिंग का रंग पिच है।

इस बिल्डिंग का नाम डॉन बॉस्को प्रोविंशियल हाउस है और ये गुवाहाटी में स्थित है।

इस तस्वीर में हमें कुछ लड़कियां नाचती भी दिखाए जा रही है।

ये लोग एक स्टेज में खड़े है।

स्टेज मे कुछ वायर्स भी जमीन मे रखी हुए है।

इस ठेले के सामने ट्रैफिक में जाम भी लगा हुआ है।

तस्वी में हमें एक रूम दिखाया गया है।

तस्वीर में एक बुजुर्ग आदमी भी सामने बैठा हुआ है।

टिन से बना हुआ है।

बिल्डिंग से थोड़ी ही दूरी में हमें एक जगह से धुआं भी निकलते हुए दिखाया गया है।

ये मैदान ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है।